इस फोटो में पर्यावरण का बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है चारो तरफ हरियाली है।

छोटे-छोटे घर दिखाई दे रहे हैं पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में एक सोसाइटी जैसी बिल्डिंग दिखाई दे रही है आस-पास खाली मैदान है जो घास से भरा हुआ --